पाजला बहोत ही सुंदर लग रहा--

इस चित्र में एक ज्वेलरी शॉप नजर आ रही है।

बाहर की तरफ कुर्सियां रखी है।

पा सलून दिखाई दे रहा है।

साथ ही में खाना खा रहे हैं।

सामने एक नेरम कॉमर्स कॉलेज नजर आ रहा है।

पीछे हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं।

लोग पूल खेलते नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा ऑफिस दिख रहा है।

गाड़ियां चलती नजर आ र--

इस चित्र मे ब्र विद्यालय बनाश्रम--

बहुत ही बड़ी नीचे लाइटें जलती दिख रही हैं।

बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं।

लेकिन उसके लिए सब रख दो।

सामने बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है बड़ी-बड़ीउम्म्म् हॉस्पिटल में देख--

में चहरियां रखी दिख रही है स्ट्रॉबेरी --

बहुत ही स्वादिष्ट लाल लाल रंग की--

हरे पत्ते रखे हैं गुच्छा बना हुआ ।

सड़क पर हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत सुंदर नर्सरी दिख रही है हरे भरे पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

नर्सरी में बहुत सारे औधे दिक् --

रिसेप्शन रिसेप्शन पर सामान रखा है।

सामने ठेले पर गाजर मूली ककड़ी--